मुझे इस चित्र में एक हिल स्टेशन दिखाई दे रहा है।

मुझे इस चित्र में एक दुकान नजर आ रही है।

इस पेट्रोल पंप पर एक सफेद कलर की--

रेस्टोरेंट नजर आ रहा है उस रेस्टोरेंट में बहोत सारी टेबल और चेयर्स रखी हैं।

मुझे इस चित्र में एक रोड नजर आ रहा है उस रोड के आसपास--

शॉवर और वॉश बेसिन दिखाई दे रहे हैं।

मुझे इस चित्र में एक मकान दिखाई दे रहा है।

उस दुकान में शेल्फ बनी हुई है उन शेल्फों में छोटे छोटे बॉक्स रखे हुए हैं।

उस रेस्टोरेंट का नाम जॉनी हॉट डॉग है।

मुझे इस चित्र में एक ग्राउंड में बहुत सारी--

कुछ गाय और कुछ बकरियां खड़ी है।

मुझे इस चित्र में एक चर्च नजर--

उस चर्च के स्टेज पर एक औरत दे रही है।

मुझे इस चित्र में एक पेट्रोल पंप नजर आ रहा है।